यहाँ देखिये यहाँ पे ये कोई गोदाम उदाम है यहाँ पे कोई सामान है यहाँ कॉफ़ी चाय पिछल रहा है इधर आदमी मे दर्द देखा रहे है दे रहे है यहां।

और ये बच्चे है ये देखिए कितना अच्छा कसरत में है ये दौड़ रहे है खेल रहे है कूद रहे है बैठे है इतना अच्छा लग रही है।

यहाँ पे पेट्रोल पंप है बहुत बड़ा पेट्रोल पंप है यहाँ पे इतना अच्छा पेट्रोल पंप है की भीड़ तो थोड़ा सा नहीं है|

यहाँ पर देखिए देखने लायक लगा है देखने वाला चीज है इ सब इतना मस्त लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है बहुत सुन्दर लग रहा है देखने में बहुत बढ़िया है।

यहाँ देखिये यहाँ देखने लायक है नजारा ये ये नजारा देखने लायक है ये बस है बस है|